उनके पीछे जो है बड़े-बड़े पेड़ है और वहां पर एक रोड है और उस रोड पर एक आदमी खड़ा है।

जिसके सामने जो है बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर जा रही है कुछ बच्चे इस कार्यालय से बाहर आ रहे हैं।